और सामने काउंटर में दो भगौने रखे हैं।

बिल्डिंग में बहुत से कमरे बने हुए हैं।

इसमें बहुत सारी मेज है एक लाइन में रखी हुई है।

और उनके सामने कुछ नई महिलाएं टीचर खड़ी हुई है।

बिल्डिंग के पास में एक पेड़ दिख रहा है।

यानी रेड कलर का सूट पहना हुआ है।

ऊपर दो व्यक्ति खड़े हैं और पास में एक व्यक्ति और खड़ा है और पीछे ग्रिल लगी हुई है।

यह किसी रेस्टोरेंट का चित्र है।

रोशनी और भी एक मेज है। उसके चारों ओर कुर्सियों पर --

और नीचे फर्श बिछा हुआ है पीछे दो खिड़कियां दिखाई दे रही है।

और कुछ व्यक्ति लाइन से अंदर जा रहे हैं।

यह किसी धार्मिक स्थल का चित्र है।

और उसके ऊपर एक लाउडस्पीकर रखा है।

और कुछ धाने और नीले कलर के गुब्बारे लगे हुए हैं।